और यहां पे लाइट भी लगी हुई है और यहां पे देख सकते हो एक लड़की खड़ी हुई है।

और यहां पे कानों के भी दिख रहे हैं पंद्रह रुपया का लिखा हुआ है और यहां पे एक औरत भी खड़ी हुई है यहां एक लड़की इसमें नीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं।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

और यहाँ पे आप देख सकते हो पेड ही पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ यहाँ पे हरियाली हरियाली दिख रहीं हैं।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

यहाँ पे आप देख सकते हो ये--

सफेद रंग की भी गाड़ी है और काले रंग की भी गाड़ी है यहां पे आप देख सकते हो।

बहुत सारी बिल्डिंग बिल्डिंग ही दिख रही है ये यहां पे।

फूल भी लगा रखे हैं और यहां पे देख सकते हो हरी हरी घास भी दिख रही है।

और यहां पे आप देख सकते बहुत अच्छी सजावट कर रखी है ये एक और आदमी खड़ा हुआ इसने ब्लैक रंग के कपड़े पहन र

टाइ है टाई रखे हुए हैं यहां पे तीन चार कुर्सीया रखी हुई है और एक मेज रखी हुई है मेज के ऊपर--

मुरली ले रहे हैं देखने में बहुत सुंदरता

और यहां पे ये आदमी बणा रखा है मूछ लगा र--